ये जो पिक्चर है एक शोरूम की पिक्चर है बहुत ही अच्छे जो है लड़कों के जो कपड़े लगाए हुए हैं हैंग करके।

दवाइयां बहुत सारी दवाइयां अलग अलग तरह की जो हैं दवाइयां रखी हुई हैं।

मॉल की जे जो है पिक्चर है सामने येलो येलो खम्भे लगे हुएं हैं।

चेयरे लगी हुई वुडन की दोनों चेयरे लगी हुई हैं।

चेयरे लगी हुई है ऊपर जो है शेड पड़ी है चेयरे जो है सफेद रंग की जो है चेयरे हैं।

साथ में जो है गाड़ी लगी हुई है सीढ़ियां लगी हुई है बहोत ही प्यारा जो है सजावट के लिए--

अच्छी जो है सी डेकोरेशन की हुई है बहोत प्यारी डेकोरेशन है।